इस इमेज में मुझे एक घर दिखाई दे रहा है घर के सामने एक ब्लैक कलर की मोटरसाइकिल रखी है बाजू में एक बिल्डिंग हैं ।

इमेज में मुझे एक रोड दिखाई दे रहा है रोड पे बहुत सारे वाहन रखे हुए हैं जीप बस रखी हुई है दो ऑटो रखे हुए है एक टांगा जा रहा हैं।

इस इमेज मे मुझे बहुत सारे ऑटो दिखाई दे रहे है और दो बसे दिखाई दे रही है और बहुत सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंगे दिखाई दे रही है।

और पार्क में अम बच्चो के खेलने का कुछ खेलने के सामान लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस इमेज मे मुझे एक पंजाब बैंक दिखाई दे रही है पंजाब नेशनल बैंक मोटर साइकले दिखाई दे रही है और एक उम शटर दिखाई दे रही है और एक आदमी दिखाई दे रहा है।

इस इमेज में मुझे एक दुकान दिखाई दे रही है दुकान के अन्दर बहुत सारे कुर्ते टंगे हुये दिखाई दे रहे है जो कि अलग-अलग कलर के है एक अादमी कुर्सी पर बैठा है।

जिसमें रेड कलर की टी- शर्ट पहने टोपी लगा हैं और हाथ में मोबाईल रखे हुये हैं।

दिखाई दे रही है एक मोटरसाइकिल दिखाई दे रही है एक ई टी ओ टी दिखाई दे रही है जीप --

इस इमेज में मुझे एक बी.ए. आर. बी. इ .आर. शॉप दिख रही है जिसमें फूगे लगे हुए है बाद में पोस्टर लगा है उसपे सलमान खान छापा हुआ दिखाई दे रहा है।